ये पथरीले इलाके जैसा दिखाई दे रहा है और नीचे गुफा में एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा है।

ये पब्लिक पार्क वाली रोड है पब्लिक पार्क का एरिया है ये पब्लिक पार्क है इसमें तोपों की मशीन लगी हुई है हर-भरा एरिया है यहां पे एक पेड़ है।

बाहर एक बाइक खड़ी हैं एक बिल्डिंग के अंदर लड़का जा रहा हैं उस पास में सड़क गुजर रही हैं सड़क पर बाइक वगैरे--

मैदान के पास में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और इसमें छोटे-छोटे कांटेदार झाड़ियां जैसी उगी हुई है।

इसमें बेंच लगी हुई है बाहर जो चप्पल शूज वगैरा उतारने के लिए रखते हैं।

डिजाइन बहुत ही अच्छा है जो काम में से बच्चों की कला बनाकर दीवार पर चिपकाई हुई है जो दिखने में बहुत ही सुंदर--

इसमें लोग टहलने के लिए आते हैं व्यायाम वगैरा करने के लिए आते हैं कुछ यहां बच्चों को लेकर खिलावाने के लिए आते हैं यहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

एक बच्चे का फेस क्लियर नहीं दिख रहा उधर एक खेत है जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है खेत में कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है।

और उधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ लोग इधर से जा रहे हैं और एक यहां तोप वाली मशीन लगी हुई है।

और मकान बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है रेलिंग लगी हुई है इसमें वाइट कलर का मार्बल --